पौधे लगाए हुएं हैं बहोत सुंदर सी डेकोरेशन टाइप का क्यारियां बनाई हुईं हैं।

व्यूव जो है लग रहा हैं बहोत प्यारा लग रहा हैं।

बहोत ही मात्रा में जो है उगाए हुए हैं आदमी जो है अपना काम कर रहे हैं औरते भी--

डेरी की जिसमें प्लांट मिल्क प्लांट है डेरी है वो दूध मिलता है वह पिक्चर है बहोत ही--